अच्छे तरीके से पढाई करवाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे सिक --

यह एक नदी का फोटो दिखाया गया है यह नदी काफी ज्यादा बड़ा है इस नदी में बहुत सारे नाव भी चलते हैं और इस नदी में --

यह एक बस स्टैंड का फोटो दिखाया गया है | यह बस स्टैंड काफी ज्यादा बड़ा है ।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शूज एंड सैंडल खरीदने के लिए यहाँ पे हर कम्पनी का शूज और सैंडिल्स मिलते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया-बढ़िया शूज और सैंडिल्स मिलते हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शूज और सैंडल्स खरीदने के लिए यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है सुबह का टाइम में।

यह एक बस इस स्टैंड का फोटो दिखाया गया है यह बस इस स्टैंड काफी ज्यादा बड़ा है। इस बस इस स्टैंड मैं बहुत सारे बसे गाड़ी खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी जा रहे है। बस मैं बैठ रहे हैं और यह बस --

बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए आते है इस कैफ़े मे बहुत ही अच्छे तरीके से कॉफ़ी बनाया जाता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कॉफ़ी दिया जाता है यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीने लिए आते है ।